और इ और क-कछुआ बना हुआ सामने एक आदमी इ काला कपड़ा पहने इ खड़ा है।

सफेद प पैंट पुता है।

और चिप्स पास्ते कुरकुरे ये जो सामने टंगे हुए हैं।